तो फिर नीला हरा रंग क बैनर लगल ह ऊपर सिनेमा घर वाराणसी लिखल ह रे --

कम से कम क व्यवस्था ह एकदम अन्हार ह।

दू तीन ठे अदमी मोबाइल क लाइट जलाके लाल लाल जलत ह होत ह।